और यहां पे चर्च सिंबल भी बने हुए हैं।

और यहां पे फूलों से इस दुकान में डेकोरेट किया गया है।

यह एक मछली का दृश्य है जोकि एक सार्क की तरह प्रतीत हो रहा है जिसको ठेले पर रखा गया है।

और यहां पे बहोत तरीके के पेड़े है नारियल के पेड़ लगी हुई है और एक आम के पेड़ भी लगी हुई है।

काफी सुंदर आकृति बनाई हुई है और आगे में फूल लगाया हुए है उजले कलर के ग्रीन कलर के पत्ते हैं और इस सोफे का रंग उजला और रेड कलर का है।

और बगल में एक फ्लावर पॉट भी नजर आ रहा है जिसमें कुछ येलो कलर की फुले लगी हुई हैं।

दृश्य में हमें संगीत इलेक्ट्रॉनिक दुकान दिखाई दे रहा है।

और बजाज कंपनी की कई सारी समाने हैं जोकि दिखाई दे रही है।

और सामने में छोटे छोटे से घासे भी नजर आ रही है।

और यहां पे एक बड़ा सा घना पेड़ भी है।

यहां पे काफी हरी भरी पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं कुछ छोटे पौधे में--

जोकि एक चक्के के आकार की तरह दिखाई दे रही है।

इस बैंक के सामने में एक पोस्टर लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ फेडरल बैंक ए_टी_एम ।

इसमें हमें एक नाव दिखाई दे रही है जिसके ऊपर में दो लोग खड़े हुए हैं।

और सूर्य उदय यहां पे एक तालाब भी है जो कि पानी में भी सूर्य की प्रतिमा नजर आ रही है।

और यहां पे कुछ तलाब में कुछ दूर पर कुछ बड़े बड़े से घासे भी नजर आ रही है।

दृश्य में हमें एक बोर्ड नजर आ रहा है जिसके ऊपर में अल्ट्राटेक सीमेंट द इंजीनियरिंग चॉइस लिखा हुआ बगल में भी कुशवाहा ड्रेसेज सहीजना गढ़वा करके लिखा हुआ अंदर में बहुत सारे सीमेंट की बोरी नजर आ रही है।

और कुछ अलग तरीके की भी कंपनी की पेंट रखे हुए हैं और यहां पे नीचे में भी कुछ छोटे छोटे डब्बे में भी पेंट नजर आ रहे हैं जो की रखे हुए हैं।

उपर मैं उजले कलर के कुछ झालर लटक रहे हैं।

और बीच में येलो और व्हाइट रेड फूल से सजाया हुआ है।

जहां पे काफी जिम करने वाली अलग अलग तरीके के मशीने नजर आ रही है।

और पीछे में भी सीटे नजर आ रही है परदे लगे हुए है खिड़की के पास ऊपर में भी काफी जगह है।

और यहां पे एक शीशा लगा हुआ है और ऊपर में लाइट लगी हुई हैं।

जिस पर जे_सी_बी कुछ काम कर रहा है।

यह एक स्टेशनरी का दृश्य है।

स्टेशनरी दुकान का नाम है श्री हिंगलाज बुक डिपो ।

और यहां पे जो लोग खड़े हैं उनके कपड़ों पे भी कुछ लिखा हुआ है एसडीएस जीरो वन कर--

इस दृश्य में हमें एक दुकान नजर आ रहा है जिसके ऊपर में एक बोर्ड लगा हुआ है।

यह एक क्लीनिक का दृश्य है यहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है डेंटल ओरल --

और यहां पे बहुत घना पेड़ पौधा लगा हुआ है जो काफी लंबे लंबे नजर आ रहे हैं और कुछ छोटे भी हैं।

जो की बीच से बिल्कुल खाली है और इसके चारों तरफ से प्लास्टिक टाइट किए हुए हैं।

और यहां पे अलमीरा भी सामने में पैक्ड है जो की कार्टून में रखे हुए हैं।

एक यहां पे आइस क्रीम बेचने वाला भी दिखाई दे रहा है जो की रेड कलर कि बॉक्स में आइस क्रीम बेच रहा है।

यह एक होटल का दृश्य है जो की काफी सुंदर है ऊपर में उजले और ग्रीन कलर का फ्लावर बनाया हुआ है।

और टेबल पे टिशू पेपर प्लेट्स रखे हुए हैं।

कोई थम्स अप का सिंबल बनाए हुए खड़े हैं।

और यहाँ पे रेड कलर के डब्बे हैं जिसमें फोन पैकड है बड़े बड़े से--

और भी कई तरीके के फुले है यहां पे गेंदे के फूल की एक मालाएं बनाई हुई है और कुछ लोग नजर आ रहे हैं जो की चल रहे हैं कुछ लोग नीचे में बैठ के फूल बेच रहे हैं।

और यहां पे एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने अपने हाथों पे घड़ी पहनी हुई है।